इस चित्र में छत ढलती नजर आ रही है। पिलर बन रहे हैं। अपना घर दिखाई दे रहे हैं।

ऑफिस जैसा बना हुआ है सामने की तरफ बहोत सारी गाडियां --

कुरुक्षेत्र में एक पूजा होती हुई नजर आ रही है। रैली निकल रही है। सामने की तरफ बहुत सारे मकान बने उस पर लोग चढ़ चढ़कर के देख रहे हैं। पानी की टंकी अभी --

कॉफ़ी और खाना खाते नज़र आ रहे है पराठे खाते दिखाई दे रहे है लाल रंग की मेज़ है लाल रंग की --

स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। लगी हुई है। दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर बैठ कर पूछा जा रहा है क्या या और व्यक्ति यहाँ पर बेचने में लगे हुए है साइड में टंकियां रखी हुई दिखाई दे रही है।